यह फोटो एक व्यक्ति की है जो जिम में वर्कआउट करने बाद अपनी मिरर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहा है। इस जिम में ढेर सारे --

यहाँ लेकर आये हैं। इस मोबाइल के दुकाने पे रिचार्ज किया जाता है। मोबाइलों की रिपेरिंग भी की जाती है।

यह झूला बहोत मजबूत लग रहा है। यहां ये बालक जहाँ झूला झूलता हुआ नज़र आ रहा है।

और पेन रैक में सजा के रखे हुए हैं। यह दुकान पूरी तरह से कापी किताब पेन से भरा हुआ है।

कुर्सी पे बैठेकर इंतजार करते हुए नजर आ रहै है और इस दीवार पर जिसके सहारे लोग बैठे है। इस पे ढेर सारी सुचना लिखी हुई है।

करते हुए नजर आ रहे हैं इस बैलून को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक शीशा है।

यह फोटो सैलून के शॉप की है जहां पे एक बार्बर एक व्यक्ति की सेविंग करता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे सेटरिंग हो रही है। उसके ऊपर ढलाइया की जाती है। दो व्यक्तिओ ने अपने सर पे पघड़ी बांध रखी है।